बहुत ही बड़ा खूबसूरत सा पार्क दिखाई दे रहा है इस पार्क के पास से एक रेड कलर और और एक छह का बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसमें खिड़की भी दिखाई दे रही है यहां एक बड़ा सा पोस्टर दिखाई दे रहा।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

गेट भी दिखाई दे रहा है विंडो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान मे एक शटर वाले गेट भी दिखाई दे रहा है।

बहुत खूबसूरत सा रेड कलर का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है उस पर बहुत सारी तारे दिखाई दे रही है कौवे बैठे हुए है।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

ती खूबसूरत सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहां एक क्लॉक टॉवर भी दिखाई दे रहा है यहां तीन कलर की रंगी भी दिखाई दे री है ग्रीन व्हाइट और ऑरेंज कलर की।

कच्ची दिखाई दे रही है बहुत बड़े बड़े दुकाने भी दिखाई दे रही है बगल के गेट भी दिखाई दे रही है बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है ठेले भी दिखाई दे रहे है।

बहुत ही खूबसूरत सा ग्रॉससरी शॉप दिखाई दे रहे है जहा पर प्लास्टिक के डब्बे कार्टून क डब्बे बीच पंखे और बिंगी रखी गई है यहा की ज़मीनों पर मार्बल बिछे हुए है।

यहा बहुत सारे चॉकलेट के डब्बे भी रखे गए है बहुत सारी समाने टंगी हुई भी दिखाई दे रही है यहा शटर वाले गेट भी दिखाई दे रहा है इस दीवार मे बहुत सारे मार्बल लगे हुए और तारे भी दिखाई दे रहे।